बहुत अच्छी बात है। देखिए जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं मरीज के लिए।

कितने अच्छे से ये भरा हुआ है। और कुछ लोग इधर घूम भी रहे है। कुछ लोग उधर बोटिंग कर रहे है। पानी के अंदर आप लोग देख सकते है और पेड़ देखिए कितने घने हैं।

ये देखिए कितना अ सुंदर दृश्य है। ये सूरज हल्का-स दिख रहा है। अ शाम का समय है शायद ये सूरज छिपने वाला हैं।

मैदान के ठीक सामने दो बिल्डिंग्स बनी हुई है और बिल्डिंग के ठीक पीछे एक बड़ा सा टंकी बनी हुई हैं।

मैदान के बीचों बीच हरे-हरे पेड़ उगाए गए हैं जो कि अभी साइज़ में छोटे हैं बाकी मैदान बहुत ही बड़ा है।